सुई लगा रहे है या तो कोई भी चोट लगे हुए यहाँ पे पट्टी मलहम पट्टी कर रहे हैं डॉक्टर जी जो मास्क लगाए हुए है और गला में बहोत ही --

धीरे-धीरे आ रहे हैं यहाँ पर और बेठे हुए हैं और खाली है जो कि और बेठे हुए हैं लोग सब बहोत ही अच्छे से और यहाँ पे बहोत कुर्सी लगे हुए हैं एक लाइन से जो कि उजरा कुर्सी लगी हुई है उजला टाइप का बहोत ही अच्छा देखने में लगता --

यह आप देख सकते हैं यह फल फ्रूट का दुकान जो देखने में बहोत अच्छा लगता है यहाँ पे काला अंगूर है और अंगूर है हरा अंगूर देखने में बहोत अच्छा लगता है।

यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बहुत बड़ा दुकान है। देखने में काफी सुंदर लग रहे है और यहाँ पे सभी सामान मिलते है बर्तन मिलते है।

यहाँ पे आप देख सकते हैं जो विष्णु जी का मूर्ति है जो काला कलर का है। देखने में भी सुंदर है। शिवलिंग टाइप से काफी सुंदर है। और उसे इसमें काला पेन्ट किया गया है।

आप देख सकते हैं ये है खटिया बजार देखने में बहोत अच्छा लगता है और यहाँ पे सभी मिर्चा है हरा मिर्च है लाल मिर्च है गोबी है।

आप देख सकते हैं ये झरना है जो कि देखने में काफी सुंदर लग रहे है और यहाँ पे लाइट भी लगी हुए है और रात का समय है और पेड़-पौधे का भी फ़ोटो आई हुई है जोकि देखने में बहोत ही अच्छा लगता है झड़ना काफी सुंदर है।

लाग़ रहे हैं। पूरा हर-भरा यहाँ पे है देखने में बहुत् ही काफी सुंदर लग रहे--

यहां पर आप देख सकते हैं ये फल फ्रूट का दुकान है जो दिखने में काफी सुंदर लग रहे हैं और यहां पे केले बिक रहे हैं नाशपती है।

यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे मंदिर है जोकि देखने में बहोत अच्छा लगता है और यहाँ पे छाता टाइप का सजाया गया है जो कि--